स्टडी वीजा वर्क परमिट स्पॉन्सर वीजा देता --

और यहां एक गूगल पे या पेटीएम कि--

यह तस्वीर एक मॉल की नजर आ रही है जहां बहोत सारी लिपस्टिक व नेलपेंट और--

रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारी चेयर दिखाई दे रही हैं एक चेयर पर पीली--

यह तसवीर एक कंपनी की नज़र आ रही है कंपनी का नाम एयरटेल है।

बहोत सारे पॉट्स नजर आ रहे हैं।

जहां बहोत सारे आकर के शीशे नजर आ रहे हैं।

छत पर प्रेस कर रहा है।

जहां आइसक्रीम अलग अलग वैरायटी की मिलती है।

यह तस्वीर एक मॉल की दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर एक रेस्टोरेंट की नजर आ रही है।

मूर्ति में राधा कृष्ण को बनाया राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित की गई है।

यह एक कैंटीन की तस्वीर है जहां बहोत सारा सामान रखा हुआ है इधर ऑयल बिस्कुट मैगी --

चीज का रेट उसके नीचे दिखाया गया--

यह तस्वीर नाई की दुकान की दिखाई दे रही--

ना अ वेह शीशे में देख कर फोटो क्लिक कर रहा है।

स्कैनर के पीछे एक फ्रिज दिखाई दे रहा है।

इसके दोनों तरफ दो रोड खुलते हैं।

यह ट्रक स्कूटी फ्लाईओवर के नीचे से जा रही है।